और ऐसा लग रहा है कि यहां जल्दी कोई खेती हो--

यह एक लेडी शॉपिंग है जिसमें एक पुतले को पीली कलर की ड्रेस पहनाई गई है यह एक सैंपल है।

उस दुकान के शोरूम में बहोत सारे कपड़े है।

एक भाई है इन्होंने स्वेटर पहना हुआ है नि ऊपर टोपी है नीचे ब्ल्यू कलर की जीन्स है और एक स्पॉट्स शूज पहना हुआ है।

साथ ही में हरी चटनी है लाल चटनी है काली कलर की थाली है और यह एक फूड ब्लॉक के जैसा लग रहा--

सामने बड़ी सी बिल्डिंग है एक लड़का लाल टी शर्ट और सफेद शॉट्स में चलते हुए जा रहा है।

ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में एक छोटा लड़का है और सब मिलके किसी प्रोग्राम को देख रहे ऐसा लग रहा है।